जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे गमले रखे हुए हैं।

जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी हुई है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां पे महिला वगैरह हैं।

यहाँ पे मैं देख सकता हूँ बादल हो रहे हैं।

रेड कलर और वाइट कलर की लाइटें चल रही हैं इधर पे --

जैसे कि मैं देख सकता हूँ इ इसके बाजू में एक और रेस्टोरेंट है।

मूवी हॉल है जैसे कि मैं देख सकता हूं यहां ऊपर लाइट लगे हुए हैं।

जैसे की मैं देख सकता हूं यह एक मंदिर है।

जैसे कि मैं देख सकता हूं टेबल पर दो पानी की बोतल रखी हुई है।

जैसे कि मैं देख सकता हूँ।

टाइल्स टाइप के हैं जैसे कि मैं देख सकता हूँ एक हैंड्स की पिक्चर टाइप की है।

मेडिकल इश्टोर है।

पण्डित जी लाल कपड़ों में खड़े हुए हैं।

जैसे कि हम देख सकते हैैं।

जैसे की मैं देख सकता हूं यहां से एक रोड जा रही है।

जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ बेड पर नीचे बहुत सारी खुली साड़ियाँ पड़ी हुई हैं।

यहां पर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।